और यहां गाड़ी ठीक करने की बहोत सारी दुकानें भी--

और एक मैडम खड़ी होकर बनवा रही है।

और आधी दुकानें बंद पड़ी हैं आधी खुली हुई हैं।

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है।

बड़ा प्यारा फर्श भी हो रहा है बहुत सुंदर घर--

और दो इकूल की बस एक सफेद एक पीले रंग की और एक गाड़ी भी खड़ी हुई--

और आदमी मैट बिछा के खा रहे हैं खाना।

इसमें एक आदमी घूम रहा है और यहां बहोत बड़ा बोरड भी लगा हुआ है।